ये गुलाबी कलर का फुल है यहाँ पर हरा हरा पत्ती हैं।

--और ये जंगल के पास खिला है और ये बहुत बढ़िया फुल हैं इसकी खुशबू से बहुत बढ़िया खूशबू निकलता हैं और ये बहुत सुन्दर फूल हैं।

यहाँ पास जमीन है यहाँ पास पेड़ पौधे हैं पेड़ के ऊपर एक सफ़ेद कलर का कुछ लिखाया हुआ हैं और यह पास पेड़ भी हैं।